यहां गुलाबी रंग के फूल साइड में है।

यहां पर लाइट जल रही है।

जिनके पीछे बहोत सारी पुस्तक रखी हुई है।